ए हॉस्पिटल ए हॉस्टल उन बच्चों के लिए है।

इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है होटल आहा--

ये स्कूल लोगों के बीच में एक केंद्र बना हुआ है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत--